और बाजार मे कुछ ठेले भी दिख रहे है जिनपे सेब बिक रहे हैं और एक लाल कलर का बैग टंगा हुआ दिख रहा है।

और जिम में एक दो कांच लगे हुये हैं सेल्फ बनी हुई हैं वाईट कलर की नीचे एक ब्लैक कलर का कार्पेट बिछा हुआ है।

यहाँ कुछ डाइनिंग टेबल लगी हुई है वुडन वुडन ग्लास का टेबल और वुडन वुडन टेबल जिसमे ब्लैक कलर की सीट लगी हुई हैं।

यहाँ एक पार्टी का माहौल बना हुआ है जहाँ दो लोग बैठे हुए हैं और काफी सारे सोफे और कुर्सियां लगी हुई हैं |

ऑफिस की तस्वीर है ऑफिस में काफी सारे लैपटॉपस बने ऐ लगे हुए हैं और कुछ खा बहुत सारी खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और टेबल भी डेस्क भी बनी हुई है |

किले किले के आसपास कुछ पंछिया उड़ते दिख रहें हैं और आसमान काफी साफ दिख रहा है।

मंदिर छोटा सा है और मंदिर का गेट भी छोटा सा बना हुआ है |

पहाड़ पे काफी सारे पेड़ और बड़ी-बड़ी चट्टानें दिख रही हैं।

और दीप इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक पोस्टर लगा हुआ हैं।

यहाँ एक काफी बड़ा हॉल दिख रहा हैं हॉल में काफी सारी कुर्सियां लगी हुई हैं हॉल में ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है और काफी सारे अ फैन्स लगे हुए हैं।

और साइड में वा लोहे की रेलिंग भी लगी हुई है और फायर एक्स्टेंसेर भी रखा हुआ --